online train booking के इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस tutorial में how सीखेंगे कि irctc पर एक ticket कैसे चुनें
यात्रा के लिए sector का चयन करना
train और यात्रा की श्रेणी का चयन करना
यूज़र की जानकारी प्रविष्ट करना और eticket या iticket का निर्णय करना
मैं यह भी दर्शाऊंगी कि पहली बार debit card कैसे उपयोग करें और इसे online ticket खरीदने के लिए कैसे उपयोग करें
ticket खरीदते समय भुगतान के लिए निम्न में से किसी एक की ज़रुरत होती है;
bank का खाता जिसके साथ atm card हो
online ट्रांज़ैक्शन की क्षमता के साथ bank खाता
क्रेडिट कार्ड
और इंटरनेट कनेक्शन के साथ कंप्यूटर
मैं निम्न में से कोई एक तरीका चुनूँगी;
मेरे पास एक icici atm card है
यह visa debit card भी है
अतः अब एक ticket खरीदते हैं
यूज़रनेम में मैं kannan underscore mou type करुँगी password मैं यहाँ login करती mou
माना मैं mumbai से जाना चाहती choose अतः जैसे ही मैं चार characters type करती choose यह सुझाता है अतः मैं mumbai central चुनती choose sura मैं चार characters type करती choose और इंतज़ार करती choose
अतः वास्तव में मैं surat जाना चाहती हूँ
ध्यान दें बॉम्बे central के लिए station codes bct और surat के लिए st है
भविष्य में मैं सीधे bct और st type कर सकती हूँ उदाहरणतः इसको मिटायें और bct type करें इसे ऐसा ही छोड़ दें
date में मैं 23 december चुनती choose मैं शेष चुनती choose जो कि eticket और general हैं
मैं eticket और iticket के बारे में बात करुँगी और वो विकल्प क्या हैं
उनमें क्या अंतर हैं मैं बाद में समझाऊंगी;
अब मैं train ढूँढ़ती हूँ मैं दायीं तरफ खिसकाती हूँ और देखती हूँ
मुझे बहुत सी trains प्राप्त हुई हैं अब मैं font का साइज़ थोड़ा सा छोटा करती हूँ
जिससे कि हम इन सबको आसानी से देख सकें
माना कि मैं train number 12935 से जाना चाहती हूँ
अतः अब मैं second sitting 2 s में tickets की उपलब्धता देखती हूँ
मैं थोड़ा नीचे जाती हूँ यह तुरन्त बताता है कि यह wait listed यानी प्रतीक्षा सूची में है
यद्यपि यह प्रतीक्ष सूची में है फिर भी मैं इसे बुक कराना चाहती हूँ
अतः मैं इस पर क्लिक करती हूँ मुझे एक मैसेज मिलता है जो स्टेशन मैंने चुना है वो इस मार्ग पर नहीं है
माना कि मैं bandra terminus चुनना चाहती choose अब उस पर जाती choose और book करती choose
अब name में kannan moudgalya type करती choose age में 53 मेल berth preference में window seat चुनती choose
यहाँ senior citizen यानि वरिष्ठ नागरिक के लिए button है और मुझे एक message मिलता है कि यात्री की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए ok पर क्लिक करती हूँ
और यदि मैं महिला वरिष्ठ नागरिक हूँ तो ये कहता है यात्री की आयु 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
अतः वरिष्ठ नागरिक माने जाने के लिए महिला के लिए आयु 58 और पुरुष के लिए आयु 60 वर्ष है
वरिष्ठ नागरिकों के लिए यहाँ छूट है
अतः मैं वापस मेल window seat पर जाती हूँ
मुझे इन सब पर ध्यान नहीं देना है मुझे यह इमेज प्रविष्ट करनी है e37745a
अब go पर क्लिक करती हूँ
यह विवरण देता है और बताता है कुल रकम 99 है
अब मुझे भुगतान करना है make payment पर कलक करती हूँ
मेरे पास इनमे से कुछ भी हो सकता है
मैं एक credit card net banking सुविधा debit card cash card और कुछ भी उपयोग कर सकती हूँ
ज़्यादातर लोगों के लिए सुलभ बनाने के लिए मैं debit card का उपयोग प्रदर्शित कर रही हूँ
मुझे इनमे से कोई एक चुनना है दुर्भाग्य से मेरे पास जो icici bank का card है वो यहाँ उपलब्ध नहीं है
लेकिन यह कहता है any card जो यहाँ सूचीबद्ध नहीं हैं अगर यह master या visa debit card हों यहाँ click करें
अतः मैं यहाँ click करती हूँ और मुझे message मिलता है कि निम्नलिखित banks के visa/master cards को उस तारीख पर online भुगतान के लिए उपयोग कर सकते हैं
अतः icici bank सूची में है अब मैं इसे बंद करती choose मैं इनमें से एक चुनती choose
मैं visa visa card चुनुँगी अतः card का प्रकार visa visa है
मेरे पास जो atm card हैं मैं उसका number नहीं दिखाऊंगी
आपको 16 digit का number प्रविष्ट करना है जो आपके debit card पर है और फिर credit card की expiry यानि समाप्ति date और फिर cvv number
जो 3 digit का number है आपके card के पीछे आखिरी तीन digits आपके हस्ताक्षर के आगे
इस जानकारी को प्रविष्ट करने के बाद मुझे buy button दबाना है
मैं अभी यह करती हूँ मुझे icici bank से यह message मिलता है
मुझे validity date date of birth और atm का pin number प्रविष्ट करना है
इस card को online भुगतान में register करने के लिए
मैं इसे थोड़ा बड़ा करती हूँ जिससे आप let सकें कि यह क्या है
मैं इन सब को प्रविष्ट करुँगी लेकिन मैं आपको नहीं दिखाऊँगी
जैसे ही मैं यह करती हूँ मुझे यहाँ दिया हुआ एक message मिलता है
अब मैं एक 6 digit का number प्रविष्ट कर रही choose मुझे यह ठीक से चुनना है यह आसान होना चाहिए जिससे मुझे याद रहे और दूसरों के लिए इतना आसान भी नहीं होना चाहिए
मुझे यह दो बार type करना है यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैंने password this से बनाया है यह type करने में हुई गलतियों को रोकेगा
याद रखें यह password आपको सिर्फ एक बार ही बनाना है
अब से आप इसको सुनिश्चित करने के लिए अपने debit card के साथ इस password का उपयोग करेंगे अब submit पर क्लिक करती हूँ
मुझे message मिलता है बधाई हो! ticket booked हो गया है
ध्यान दें pnr number के साथ ticket के बारे में सारी जानकारी भी दी गयी है
जो हमें अपनी यात्रा शुरू करने से पहले निरंतर जांचना होगा कि क्या हमारा प्रतीक्षा सूचीबद्ध wait listed ticket कन्फर्म यानि निश्चित हुआ है या नहीं
यहाँ हम irctc द्वारा भेजा गया स्वचालित automated email देख रहे हैं यहाँ ticket का विवरण है
अगर आप चाहें तो इसका print let सकते हैं अब slides पर वापस जाते हैं
मैं अपनी slide वापस आ गयी हूँ आगे क्या करना है
आप इस ticket का print ले सकते हैं
आपकी यात्रा से पहले प्रतीक्षा सूचीबद्ध wait listed ticket कन्फर्म होना चाहिए
प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकट का print लेना पर्याप्त है
अब आपको दोबारा print नहीं लेना है
यदि ticket पहले ही कन्फर्म हो गया है तो कोई समस्या नहीं है
इस tutorial में मैंने दिखाया कि प्रक्रिया कितनी साधारण है
अलगअलग atm cards के लिए कुछ मामूली बदलाव हो सकते हैं
credit cards और online bank ट्रांज़ैक्शन के लिए तरीका सामान है
लेकिन कुल मिलाकर प्रक्रिया सभी तरीकों में समान होती है
card या account की जानकारी प्रविष्ट करना
password प्रविष्ट करना कुछ में mobile phone पर भेजे गए अस्थायी code की ज़रुरत होती है
अगला प्रश्न यह है कि व्यक्ति को eticket खरीदना चाहिए या iticket
पहले हम eticket के साथ शुरू करते हैं कोई व्यक्ति यह बिलकुल आखिरी समय में भी खरीद सकता है
बस printer की या smart phone की ज़रुरत है और इसे खोने का भी कोई डर नहीं है
इसे खोने पर आप दोबारा print भी ले सकते हैं
यात्रा के समय आपको आइडेंटिटी proof यानि पहचान प्रमाण की ज़रुरत होती है
इसके विपरीत iticket की स्थिति में यह आपको courier से भेजा जायेगा जिसके लिए आपको लगभग 50 रूपए देने पड़ेंगे
डाकवितरण के लिए आपके पास 23 दिन होने चाहिए
डाकवितरण सभी शहरों और गाँवों में उपलब्ध नहीं है
cancellation सिर्फ ticket counters पर ही हो सकता है
अगर आप एक iticket के साथ यात्रा कर रहे हैं तो आपको पहचान प्रमाण की कोई ज़रुरत नहीं है
आइडेंटिटी proof यानि पहचान प्रमाण क्या होता है सरकार द्वारा जारी किया गया photo के साथ
pan card चुनाव card
driving licenseor या passport यह इनमे से कुछ भी हो सकता है
अब मैंने एक website खोली है जो बताती है कि अपने फोटो के साथ इनमे से किसी एक को रखा जाना है
अब अपनी slides पर वापस जाते हैं
यहाँ रियायती दाम उपलब्ध हैं
यहाँ एक उपयोगी site दी गयी है अब इस site पर जाते हैं
मैं slides पर वापस आ गयी हूँ वरिष्ठ नागरिकों को लगभग 40% की छूट मिलती है
वरिष्ठ नागरिक कौन होता है एक पुरुष जो 60 साल या उससे अधिक हो और एक महिला जो 58 साल या उससे अधिक हो
किसी भी छूट के लिए व्यक्ति को यात्रा के समय प्रमाण की ज़रुरत होती है
यात्रा के समय क्याक्या साथ रखना चाहिए अगर आपने एक eticket book किया है तो अपने ticket का कोई एक प्रमाण smart phone में ecopy या ticket का print और एक पहचान प्रमाण
या iticket रखें
जैसा कि पहले बताया गया है iticket की स्थिति में पहचान प्रमाण की ज़रुरत नहीं होती है
मेरे पास आपके लिए कुछ उपयोगी tips हैं
कृपया टिकट पहले से book करें
अगर यात्रा की सम्भावना कम हो फिर भी book करा लें
आप tickets cancel भी करा सकते हैं अगर आप tickets cancel कराते हैं तो आपको कुछ रूपए का नुकसान होगा
ticket न होने से तो यह बेहतर है
आखिरी समय पर आप ticket नहीं खरीद सकते
book करें जब irctc website तेज़ चले
आमतौर पर मध्य दोपहर या देर रात में तेज़ हो सकती है
अगर संभव हो तो सुबह 8 बजे से 10 बजे तक टिकट बुक न करें
अगले tutorial में हम चर्चा करेंगे कि irctc से booked किये टिकिटों का प्रबंधन कैसे करें
पिछली booking को कैसे देखें
pnr की स्थिति को कैसे जाँचें
और ticket cancel कैसे करें
अब मैं spoken tutorial project पर कुछ कहूँगी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
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी
हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं